फिर बाहर ये कुछ रंग बिरंगे कलर किए गए नजर आ रही हैं और ये ब्लैक कलर में पोस्टर लगे हैं।

और यह बस सड़क पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये कुछ मजदूर हैं कुछ कार्य कर रहे हैं कुछ सरिया बिछा रहे हैं कुछ मसाला मिला रहे हैं।

इस फोटो मे ये कोई एक वाइट कलर का पेंट किया गया है उपर कुछ शब्दों मे लिखा गया है।

ये कोई एक डॉक्टर की शॉप है।

आदमी पास में बैठे हुए है बातचीत कर रहे है और लैपटॉप मे कुछ टाइप भी कर रहे है और पास मे एक ब्लैक फोन पड़ा है।

इसमें ये लेडिस कुछ आदमी कुछ जेंट्स और भी बैठे नजर आ रहे हैं तरह तरह की लाइटें भी नजर आ रही हैं।

रेड कलर की और बॉक्स हैं उसमें भी जूते लग रहे हैं ऊपर छत पे अच्छी तरह तरह की लाइटें लगी हुई है।